यह एक बाज़ार है यहाँ बाज़ार में बहुत सारे लोग खरीदारी करने के लिए बाज़ार करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं ।

यह एक एम.टी. यूनिवर्सिटी है। इस एम.टी. यूनिवर्सिटी बहुत ही बड़ा है। इस यूनिवर्सिटी में काफी सारे लड़के और लड़कियां इस एम.टी. यूनिवर्सिटी में एम.टी. करने के लिए आते हैं।